यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं और पूरा रात का वक्त है| यहाँ पे चारों तरफ लाइट जल रहे हैं और बिल्डिंग में आजू-बाजू कोई नहीं दिख रहा है और पूरा रोड पे सन्नाटा छाया हुआ है।

यहाँ एक गार्डन दिखाई दे रहा है| वहाँ पर बड़े-बड़े नारियल के झाड़ के पीछे बोहोत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं और ग्रास अच्छी तरीके से कंपाउंड की तरह कट करे से दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा घर या अपार्टमेंट बनाने का दिख रहा है| और सामने नीचे एक शटर दिख रहा है और सामने ऊपर दो बालकनी के वैसा ग्रिल डाल के छोड़े सो दिख रहा है।

एक बाजार दिख रहा है और एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं| यहाँ पे कुछ टेस्टिंग सेंटर दिख रहे हैं और बहोत सारे गाड़ी सामने खड़े हैं और सामने बहोत सारे बिल्डिंग है और रोड पे ऑटो आ रहा है।